देखे यहाँ पर एक हिरण खड़ा हुआ है।

जो ये रंग बरंगा दिखाई दे रहा है और उधर में ये कुछ टुकड़े भी पड़े हुए हैं।

हैलो गाइज ये एक मकान है। पूरा बाजार है। हमे एक छत पे ठहरे हुए हैं। वहाँ रेलिंग लग रही है।

देखिए ये नारियल के पेड़ खड़े हुए हैं और उधर में एक झाड़ी सी दिखाई दे रही है।